इस चित्र मे एक बड़ा ऑफिस नजर आ रहा है एक में वह एक कन्या बैठ कर सब काम करते दिखाई दे रहे है टेब --

पीछे की तरफ नीला आसमान दिखाई दे रहा है चित्र बेहद सुंदर लग रहा है सामने की तरफ बड़ा घर दिखाई दे रहा है जो कच्चा बना हुआ है।

नई आखो पे रोशनी पड़ेगी इस तस्वीर मे बहोत बड़ा स्कूल दिख रहा है इसमे कन्याए योगा करती--

पेड़ दिखाई दे रहे है नीचे मिट्टी पड़ी दिख रही है पीछे एक सीढ़ी पेड़ पर लगी नजर आ रही है तस्वीर बहुत ही अच्छी दिख रही है।

इस तस्वीर मे तीन हुक्के नजर आ रहे है बड़े बड़े पुरानी जमाने की यंत्र दिख रहे है पीछे की तरफ की दीवार बहुत सुंदर लग रही है कुर्सी भी रखी दिखाई दे रही है।

लाल रंग का कालीन रखा नजर आ रहा है इस चित्र में व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा तस्वीर बहुत प्यारी लग रही है।

चित्र मे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने हरे भरे पेड़ सामने की तरफ नीला आसमान और एक साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है एक--

इस चित्र मे नीला आसमान दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है।

बहुत बड़ी कसरत की मशीने रखी है सामने तरफ एक नीचे लाल रंग की है खाली रंग अ

बहुत बड़ा मैदान है लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ बच्चे साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ा मैदान लग रहा है।